घर के कंस्ट्रक्शन के काम होते नजर आ रहे हैं।

यहाँ हमें बोहोत सारे ओपन प्लेयर दिखाई दे रहे हैं।

लाइटिंग से बोहोत अच्छे सजाया गया है।

यहाँ हमें एक प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है जहाँ बच्चो के बहोत से खेलने के सामान नजर आ रहे हैं।

हमे यहाँ महिंद्रा की एक शोरूम दिखाई दे रही है जिसमे हमे --

रोड नजर आ रहा हैं जिसमें एक बाइक में कुछ लोग जाते दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पे बहुत सारी कुर्सिया भी लगी हुई है जहां पे कुछ व्यक्ति --

बैठे दिखाई दे रहे हैं और स्टेज के ऊपर हमें --

वहाँ एक भी बैनर भी लगा हुआ है जिस में फ्रेस्सर लिखा हुआ है।

दीवार नजर आ रहें हैं जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमें --

नजर आ रही है यहाँ पे एक महिला मछली काटते।

हमें यहाँ एक रास्ता नजर आ रहा है और हमें यहाँ एक दुकान दिखाई दे रही हैं जिस में सूरबी बुक भंडार लिखा हुआ है जो कि --

जो कि लड़के के कपड़े के शोरूम है यहाँ पे बाहर --

यहाँ पे हमे एक रेलवे ट्रैक नजर आ रहा है | जहाँ हमे एक रेलगाड़ी --

साड़ी पेहन कर बैठे --

यहाँ लोहे के कुछ समान नजर आ रहे हैं जो कि नीले कलर की बनी हुई हैं जो हमें दिखने में फैन की तरह दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ हमे एक पार्क दिखाई दे रहा है यह बच्चों के लिए खेलने के लिए एक बहुत ही सुंदर पार्क हैं यहाँ हमे कुछ बच्चे खेलते भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे हमे कलर कलर कि पिछलपट्टी --

हमे यहाँ पे एक आइस गोले का ठेला दिखाई दे रहा हैं जहाँ पे हमें अलग-अलग प्रकार के--

इस पत्थर की मूर्ति में हमे चारो तरफ़ छोटे छोटे मूर्तियाँ और कुछ चित्र बने नजर आ रहे हैं जो कि दिखने में बहुत ही आकर्षणीय दिखाई दे रहे हैं |